और बैनर भी लगा हुआ है फूल से।

और पत्थल भी इधर दीख रहे हैं।

ठेला पे सब्जी बिक रहे हैं।

और खिड़कियां भी दिख रहे हैं।

इस दृश्य में एक जंगल दिख रहे हैं।

पंखा भी लगे हुए हैं।

और लाइटें लगे हुए हैं।

खिड़कियां भी दिख रहे हैं।

और तीन सीढ़िएं भी दिख रहे हैं।

और इधर एक पोल से लाइटें लगी हुई हैं ।

और ऊपर में बिस्किट भी दिख रहे हैं।